मुझे इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है की इस ये बहोत बड़ा पत्थर का बना हुआ बिल्डिंग हैं।

मुझे इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि ये एक भारतीय स्टेट बैंक है यहां लोग पैसे निकालने के लिए आए हुए हैं।

दो बुजुर्ग आदमी लोग है जो बैंक में बैठे हुए --

इसमें बहोत से घोडों के मूर्ति हैं। और घोड़े एक रथ को खिंच रहैं हैं ऐसा मूर्ति बना हुवा है।

ये एक कोचिंग सेंटर है जैसे लग रहा है यहां पे पर्दा लगा है लाइट जल रहा है।

मैदान में हरी भरी घांसे लगी हुई है और यहां पर --

एक पेंटिंग बनी हुई है इस पेंटिंग में एक महिला एक पुरुष का पेंटिंग बना हुआ है यहाँ पे एक लड़का फोटो खिचा रहा हैं।

मुझे इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि ये एक मुस्लिम लोगों का मंदिर हैं।

मन्दिर में बहोत सारे देवी- देवताओं के मूर्तियाँ है इसमें एक आदमी है जो प्रसाद बाँट रहा है इसमें म्यूजिक बज रहा है इसमें बहोत सारे लोग--

तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि यहां पर कुछ ऑफिसर या फिर --